ये इस फोर्ट को पत्थर से बनाया हुआ है।

ऊपर में दो लाइन ऑन दिखाई दे रही है।

दुकान का बाहर में दो लड़का खड़ा है।

मुझे सेल्स में बहुत सारा दारू बोतल दिखाई दे रहा है।

घर का पीछे में बहुत बड़ा बड़ा पेड़ भी लगाया हुआ है।

और उसका सामने में बहोत सारा अं इंसान लोग दिखाई दे रहा है।

मुझे लेट सिग्नेचर वर्क डन हियर करके भी दिखाई दे रहा है।

और मुझे चेयर लोग बैठने के लिए दिखाई दे रहा है और टेबल भी दिखाई दे रहा है दो तीन ठो।

रूम का वाॅल को ऑरेंज कलर से पेंटिंग किया गया है।

सामने में मुझे एक फैन भी दिखाई दे रही है।

मेरा में बहोत सारा कपड़ा और बोल लोग रखा हुआ है।

दुकान में बहोत सारा सामान दिखाई दे रही है।

आइसक्रीम बाहर में आइसक्रीम का स्टीकर बड़ा सा चिपका के रखी है।

और साइड में भी बहुत बड़ा बड़ा पेड़ दिखाई दे रहा हैं मुझे और सामने मे मुझे उम घर भी ब्लू कलर का एक दिखाई दे रहा है।